यह दृश्य एक रेलवे स्टेशन का है जिसके सामने एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग बनाया हुआ है जो की क्रीम कलर और येलो कलर का है।

पास में एक टायर रखा हुआ है जो की वाइट कलर का है सामने एक बोर्ड है जिस पे राज कार लिखा हुआ है जो की रेड कलर का है।

आसपास बहुत सारे बच्चे खड़े हैं और बहुत सारे पुरुष हैं एक पुरुष जो की वाइट कलर का पैंट और ब्लू कलर का शर्ट पहना--

उपर में एक बोर्ड लगाया हुआ है आसपास छोटी छोटी घास और बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं कुछ सूखे हुए हैं तो कुछ हरे भरे पेड़ हैं।

इसके पीछे हार्ट बनाया हुआ है जो कि पीले और लाल कलर के फूल से बनाया हुआ है।

सामने झालर मालर बतिया लगाई हुई है सामने बहुत सारे चेयर लगाए गए हैं जिस पे पीले कलर का पर्दा चढ़ाया गया है।

सामने बहुत सारे गेंदे के फूल लटकाए हुए हैं जोकि पीले कलर के हैं।

इसके सामने एक बहोत बड़ा सा बिल्डिंग है जो कि ग्रीन कलर का है।

उसके बगल में एक बोर्ड लगाया है जिसपे होटल लिखा है।

यह दृश्य एक नदी का है जिसके पास में एक कुटिया है।

उसमें दो चार टायर लगे हुए हैं जो की ब्लैक क्लर के हैं।

यह दृश्य एक दुकान का है जिसमें बहुत सारे सामान भी रखी गई है।

यह दृश्य एक होंडा शोरूम का है जिसके अंदर बहुत सारी बाईकें लगी हुई हैं जैसे की होंडा शाइन होंडा एस_पी शाइन और भी बहुत सारे एक होंडा की एक स्कूटी जो कि ब्लू कलर की है।

एक व्यक्ति जिसने ब्लू कलर का पेंट पहना हुआ है ब्लू कलर का शर्ट भी पहना हुआ है जिसका टायर का कलर ब्लैक कलर का है।

यह दृश्य एक दुकान का है जिसमें बहुत सारी सामग्री रखी गई है जैसे कि बहुत सारे गुड्डे रखे गए हैं जो कि पिंक कलर के येलो कलर के और क्रीम कलर के है।

आस पास बहोत सारी और भी सामग्री रखी गई है जैसे कि कुकर ये सब नीचे में बहुत सारे कार्टून के बॉक्सेस रखे हुए हैं।